वहॉँ की पढ़ाई अच्छी भी है। यहाँ पर जितने भी टीचर हैं वह भी अच्छे हैं। यहाँ की हर चीज भी अंदर में जितने भी गार्डन लगे हुए --

यह एक प्लेस है जहाँ गौतम बुद्ध का मूर्ति बना हुआ है।

छोटा सा स्पेस है। एक बालक खड़ा है जो अपना काम सुचारु रूप से कर रहा है जो यह भी स्पष्ट रूप से --

और उसमें एक तोलिया भी लटका हुआ है जो सुख रहा है।

ऐसा भी दिख रहा है कोई व्यक्ति है वो अपने हाथ में अ कप लेकर के उसमें लग रहा है की चाय है वैसे शो कर रही है या कर रहा है ऐसा दिख रहा है और नीला कलर भी दिख --

इस तरह से सजाया गया है जो देखने में मनोरम और सुन्दर लगता है।

यह प्रवेश द्वार है जो रेड कलर की या कहिए की भूरे कलर के भी --